जो काफी आदमी आए हुए हैं दूर-दूर से जो दर्शन करने के लिए काफी आदमी आए हुए हैं। पेड़-पौधे भी आसपास है जो काफी अच्छा लग--

काफी ज्यादा ये गंदा लग रहा है देखिए इधर एक जो घर है वो काफी अच्छा लग रहा है इसे पीछे साइड से अच्छी तरीके से बनाया नही गया है लेकिन जो दिख रहा काफी सुंदर काफी अच्छा डिजाइनिंग है और देखिए बीच में एक रोड पार हुआ है जो काफी अच्छा लग रहा है यह एक --